यहाँ पे बहुत सारे लोग राशन खरीदने के लिए जाते हैं।

यह एक बैडरूम का फोटो दिखाया गया है।

यहाँ पे बहोत सारे लोग भी आए हुए हैं इनका गाना सुनने के लिए और यहाँ पे बहुत सारे डी.जे. साउंड भी रखे गए जो बहोत ही अच्छे क्वालिटी के है बहोत अच्छे तरीके से आवाज कर --

एच.डी.एफ.सी. बैंक में बहोत ही आसानी तरीका से खाता को खोला जाता है एच.डी.एफ.सी. बैंक में बहोत ही अच्छे तरीके से पैसा को भी रखा --

यह एक मछली मार्केट है यहाँ पे बहुत सारे लोग मछली खरीदने के लिए जाते हैं ।